घर के पीछे कई सारे पेड़ भी है।

जिसमें कई सारे इंसाने भी है।

जैसे शैंपू चिप्स मैगी --

पीछे में पहाड़ भी है और बहुत ज्यादे घर भी है।

जिसके अंदर कई सारे समाने हैं।

जिसमें कई सारे लाइट्स भी हैं इंसाने भी हैं।

मुझे इस तस्वीर में फ्लैड होते हुए जगह दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग भी है जिसका कलर सफेद है।

फायर एक्सटीन्गुइश भी दिख रहा है इंसाने भी है।

बैलून से भी सजाया हुआ है इंसाने भी हैं।

ये सारे पड़े पौधे भी है।

इस तस्वीर में मुझे होटल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे कुर्सियां भी है।

ऊपर सफेद रंग के सीलिंग भी हैं।

वायर भी दिख रहा है।

रेलिंग भी है जिसका रंग सफेद है लाइट्स भी है।